मुझे एक बोर्ड नजर आ रहा है जोकि सियाराम ऑटोमोबाइल --

और एक गाड़ी पीछे खड़ी है स्कूटी के पास एक आदमी है आगे से दूसरा आदमी भी खड़ा है।

गाड़ी के आगे और एक आदमी है उस साइड से दूसरा आदमी है।

ग्राउंड में बीच में दो गमले हैं वहां से एक औरत जा रही है।